बहुत सारे लेबर मिस्त्री ढ़लाई करने में लगे हुए हैं काफी सारे आदमी यहाँ ढ़लाई कर रहें हैं और लेबर मिस्त्री सीमेंट गिट्टी बालू मिला के ला रहा है।

हॉस्पिटल मे ईलाज करने के लिए इस हॉस्पिटल में आते हैं यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है यहां पे बहुत सारे आदमी ईलाज करने के लिए आए हैं।

यह बारहसिंघा है इसे सभी बारहसिंघा के नाम से जानते हैं यह जंगली जानवर जंगल में रहता है यह बहुत ही यहाँ पे जाली से कैद कर के इस जंगली जानवर को रखा गया है ।

यह ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे बैलून से सजाए गए हैं यहां पे लड़कियों का मेकअप होता है हेयर स्टाइल आइब्रो बनाते --

और एक आदमी एक औरत को टोटो रिक्शा की चाबी भी दे रहा है।